यहाँ से एक पुल नजर आ रहा है इसमें पूल भी बने हुए है नहाने वाले इसमें आदमी नजर आ रहा है जो घूमने का भी जगह पारक भी है यहाँ पे ।

बहुत सारे फाइल्स रखे हुए हैं।